इसमें पानी का मीठा स्वाद है। इसको बहोत सुंदर लगता है देखने --

यह एच.डी.ऍफ़.सी. बैंक है। इसमें करंट और सेविंग अकाउंट खुलता है। इसमें बहोत जल्दी पैसा निकल जाता है।

ये दुकान देखने में छोटा ही लग रहा है लेकिन बहोत --